इमेज में मोटी मोटी पेड़ की टहनियाँ दिखाई दे रही हैं।

सामने की साइड में एक गोल कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

तस्वीर में हमें एक पीछे का हिस्सा दिखाया गया है जिसका दरवाजा खुला हुआ है।